बड़े जानवर अपना भोजन यहाँ से पाते हैं और हिरणों को भी खा जाते हैं कई बड़े जानवर होते हैं ।

कई प्रकार की चीजे हैं यहां पर हर कंपनी की चीजे मिलती हैं और अच्छी हो --